और टाइल्स लगया है।

और हल्दी है शैम्पू है।

लाइट लगा है टाइल्स है कुर्सी है।

ओह और घाँस है स्कूल में पढ़ने जा रहे है।

और पोस्टर लगा है।

और एक पेड़ है खंभा है तार है और बस है आदमी बैठे है।

खुर्सी है आदमी लोग है।

उस और सफेद कलर का बादल है और आदमी लोग है कपड़ा पहने है।

और पेड़ है खंभा है और तार है।

और पोस्टर लगा है।

यहाँ पर बिल्डिंग है।